अ फेन्सी बँगलेस और सारी ज्वेलरीज वगैरा मिलती--

और यहाँ पर हमे अंदर की और बहुत ही खतरनाक और डरावना सा --

दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक हमे --

बिल्डिंग है और हमे यहाँ पर एक अ राईट साइड में बिल्डिंग --

एक होटल है और सामने से यहाँ सूरज ढलते हुए हमे नज़र आ रहा है ।

की यह एक स्टेशनरी की शॉप है और यहाँ पर अलग अलग केबिन्स बने हुए है जिधर सभी से अगे साव व्यवस्शित सामान --

तीन सोफा से रखें हुए है उ पिंक कलर का दिवार पर पेंट किया हुआ है और हमे यहाँ पर--

और कुछ लोग हमे खड़े हुए होते हुए नज़र आ रहे है और हमे इस गार्डन का नज़ारा बहुत ही ज्यादा--

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की यह एक भालू है और इस भालू को हमने--

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की यह एक टावर दिखाई दे रहा है और दो टंकिया --

क्युकी कुछ लोग तो नदी के किनारे पर बैठे हुए नज़र आ रहे है और कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे है कुछ लोग डुबकी लगा रहे--

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की यह एक टू वे रोड है और इस टू वे रोड पर यहा से दो--

गाड़ियां जा रही है और वहा से दो कार और एक ट्रक आते हुए हमे नज़र आ रहा है और हमे यह कार भी--

पहाड़ भी दिखाई दे रहे है और यहाँ का मौसम हमे यहां अ पानी का नज़र आ रहा है और यहाँ पर--

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की इंडियन टी.वी.एस. की यहाँ गाडी है।

जैसा की हम यहाँ देख रहे है की यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है और यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है।